जहां पे ये मंदिर हम अपने सा आंखों के सामने देख रहे हैं बीच में तीन--

हम इस चित्र में बहोत ही आकर्षक बहोत ही सुन्दर--

प्रबंध कर सकते हैं अपना आयोजन कर सकते हैं किसी शादी समारोह के--

ये जो हमारे सामने चित्र देख रहे हैं ये किसी मेला या बाजार का चित्र है जहां पर--

आप देख सकते हैं मेरे सामने अ-विभिन्न-विभिन्न रंगों के फूल प्रदर्शित हैं।

और उनके रंग भी बहुत आकर्षक होते हैं जो देखने बहुत सुंदर प्रतीत होते--

बनाया गया है और चर्च के चारों तरफ एक चौड़ी सी सड़क आने जाने के लिए है और बहुत ही अच्छी लग रही है।

जैसा की हम चित्र पे देख रहे हैं यह एक तस्वीर एक स्टेशन की है एक रेलवे स्टेशन की।

एक गाड़ी यहां पे जो खड़ी है वो माल गाड़ी है और एक गाड़ी पैसेंजर गाड़ी है।

जैसा कि हम देख सकते है हमारे सामने जो दृश्य वो बहोत ही मन को भाने वाला दृश्य है।

यहां पर दिखाई दे रहे हैं और देख रहे हैं की दुकान पे काउंटर पर दुकानदार भी रहता है और ग्राहक भी--

अलग अलग स्वादिष्ट दिखने वाली मिठाइयां दिख रही हैं देखते ही इनको खाने का मन करने लगता है पर--

उसके भाग ही उसके हिस्सों की तस्वीर है जो ही एक पंखे के आकार में हमको दिख रही है।

ये जो चित्र हमारी आंखों के सामने है यह एक नदी का चित्र है जहां पर कुछ नाव चलायी जा रही है।

अलग-अलग समारोह प्रबंध किए जाते हैं आयोजित किए जाते हैं ये--

जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं हमारे सामने एक थाली है थाली में खाना रखा हुआ है खाली चावल और कोई सब्जी लग रही है।

हम जो यह चित्र देख रहे हैं हमारे सामने एक चौड़ी सी सड़क है सड़क के--

इसके अगल बगल छोटा सा बगीचा बनाया गया है जिसमें हरी घास और जो चलने के लिए उसका जो फो--

यही फर्श घरों के किचन यानी रसोई घर के ऊपर के पटरी जहां पर--

अब हम जो तस्वीर देख रहे हैं ये किसी गैराज या किसी गाड़ी की दुकान है जहां पर गंद गाड़ियों की मरम्मत की जा सकती है।

हमारी आंखों के सामने जो कार खड़ी है उसका रंग सिल्वर्स यानी सलेटी कलर है जो अ मरम्मत के लिए यहां पर--

ये हमारी आंखों के सामने जो अब दृश्य दिखाया जा रहा है ये किसी पेंट की दुकान है जिसमें विभिन्न क-प्रकार के अलग-अलग तरह के--

कार जो जिसका रंग सलेटी यानि ग्रे कलर है और उस कार के बगल में दो अलग कार खड़ी हैं।